एक लकड़ी के टेबल के ऊपर वाइट कलर की प्लेट है उसमे तीन चार पराठे रखे दिख रहे है पराठे त्रिकोने बने दिख रहे है यहा गोल्डन और पिले कलर के शिके हुए रखे दिख रहे है।

बिल्डिंग बनी दिखाई दे रही है नीला कलर का एक छोटा सा घर बना दिखाई दे रहा है बस में एक गुड्डा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर की गाय खड़ी दिख रही है गाय एक घर में खड़ी दिख रही है घर में बहुत सारे सामान टंगे दिखाई दे रहे है गाय ने एक हरे कलर की एक रस्सी बांधी दिखाई दे रही है जिसके सामने भूसे की एक टोकरी पड़ी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक शॉप दिखाई दे रही है जहां पे रंगबिरंगे कलर के बहुत सारे फुल रखे दिखाई दे है फुल एक आ-गुलदस्ते में रखे दिखाई दे रहे है ऊपर वाइट कलर दिवाल दिखाई दे रहे है।

हायवे दिखय दे रहब है रोड ऐ आजूबाजू सफेद पत्ते दिख रह है आजूबाजू घास दिखाई दे रहे है घास हरे--

फूलो की दुकान दिख रही है जहाँ पर मोगरे कि बहुत सारी लड़ियाँ टंगी दिखाई दे रही है जहां पर गुलाबी कलर का फुल दिखाई दे रहा है यहाँ कैरेट में रखे दिखाई दे रहे है एक --

एक चर्च का होल दिखाई दे रहा है जहां पे वाइट कलर के कपडे मे अ एक बुजुर्ग इन्सान खड़े दिख रहे है जिनके गले में माला डाली है दिखाई दे रही है।